ये है कोई बेकरी शॉप जो कि अभी खाली है लेकिन बहोत अच्छी इसका डेकोरेट किया गया है स्कैनर उसकेनर लगाया गया है।

और बहुत सारे फूल गणपति बाबा के मूर्ति है।

ये देखिए ये है स्पोर्ट्स दुकान जहां पे स्पोर्ट्स खिलौने लड़की के लिए बार्बी --

ये एक खिलौनों दुकान है देख सकते हैं आप बहोत सारे टेडी बेयर यहां पे हैं बहोत प्यारे प्यारे।

बच्चों की यह दुकान देख सकते है एक गुड़िया है आदमी पकड़े हुए है बहोत सारे खिलौने है यहां पे गिफ्ट खरीद सकते है।

अ बहोत सारे गिफ्ट देख सकते हैं बड्डे के लिए शादी के लिए बहोत सारे प्यारे प्यारे समान यहां पे मिल सकते हैं।

जो हमें पुराने दिन याद दिलाते हैं। राजा महाराजाओं का महल--